यहाँ मुझे बोहत सारी ऊँची बिल्डिंग दिख रही है इस बिल्डिंग में कुछ है सेम कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है क्या लिखा है सेम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है वो रेड कलर में लगरा वहाँ पर कुछ काँच में वहाँ पे एक लिखी हुई है मतलब --